सामने एक कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है जहाँ पे लड़की लड़को की पोशाक टंगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे बच्चों और महिलाओ के कपड़े टंगे नजर आ रहे है।

पास ही में एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है। प्रकिया दिखाई दे रही रही है।

सामने एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है रेस्टोरेंट के आसपास और भी दुकाने दिखाई दे रही है जिनमें शटर लगे हुए नजर आ रहे है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।